ये मेरे शादी का सजावटी कार्ड है जो बहोत ही खूबसूरत था--

अगल बगल अच्छे अच्छे हरे हरे पेड़ पौधे हैं।

यह एक आसटार बना हुआ बहोत ही खूबसूरत दृश्य है।